खिड़कियां लगी हैं और यहां पे पेड़ हैं और कुछ लोग बैठे हुए है यहां।

बिक रहे और मसाले बिक रहे कुछ पेपर लगे हुए यहां पे एक आंटी झोरा लेके खड़ी है।

कुछ अलग अलग कलर के पत्ते भी हैं और यहां पे पेड़ हैं घास हैं पीछे के साइड जंगल हैं और यहां पे घास पुस फूस भी हैं।

और यहां पे एक पेड़ है पेड़ के पीछे घास है।

नीचे बैग रखे हैं स्टूल रखे हैं।

ये गौशाला है जिसमें काफी गाय हैं और पेड़ भी लगे हुए हैं टीने हैं और छत लगे छत पे।

पानी है और कार है यहां पे राज जेम्स के नाम से दुकानें हैं सोनू डिजिटल है।

दो तीन कार हैं यहां पे काफी बोतले र--

यह घूमने की टहल है जो कि पार्क है और यहां पे काफी लोग टहल रहे हैं घूम रहे हैं।

कुछ लोग बैठे हैं कुछ लोग थक गए हैं और पेड़ पौधे भी यहां पे हैं।

फोर व्हीलर खड़ी हुई है जो कि डी_एल दिल्ली की गाड़ी लग रही हैं एक स्कूटी खड़ी हुई है और यहां पे--

पंडाल बनाया गया है यहां पे लोग एक लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग यहां पे खड़े हैं अच्छे से सजावट की गई है भगवान जी का पूजा किया गया है।

बड़ी नदी या समुद्र दिख रहे है जो कि इसमें पुल भी बने हुए हैं कुछ --

और उसका पैर दिख रहा है और एक महिलाएं बैठी हुई हैं।

और ये डेंटल क्निकलि लग रहा है और यहा पे ए_सी लगे है टेलीविजन लगे है और कैमरे भी लगे--

शुद्ध वैष्णव की शायद भोजन लॉज है यहां पे रेस्टोरेंट हैं।